कुछ आदमी खड़े बनवा रहे हैं।

लाल गेट बना हुआ है। चादर नीली पड़ी है।

एक लड़का नीली शर्ट पहने हैं।

आदमियों के बगल मै गाड़िया हैं। काली गाड़ी है। आदमी --